बांसुरी बजाता हुआ दिख रहा है उसके साइड में खड़ी हुई नजर आ रही है।

सामने बैठने का पिलर नजर आ रहा है जिसका कलर सफेद दिख रहा है।

और एक छतरी दिखाई दे रही है जिसका कलर नीला और लाल नजर आ रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं लाइट दिख रही है बड़ी सी।

सामने चार लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं साइड में एक बस नजर आ रही है व्हाइट कलर की।

एक साइकल दिखाई दे रहा है जिसमें दो आइने लगे हुए हैं। साइड में बहोत सारे दुकाने नजर आ रहे हैं।

और दो तीन लोग आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक नीला कलर का बोट दिखाई दे रहा है जिसमें सफेद कलर में नाइट्रोजन फ्री एयर लिखा हुआ है।

रोड नजर आ रहा है जिसमें आंध्रा बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है उसका साइड में एक और बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड नजर आ रहा है उसमें एक्सिस बैंक लिखा हुआ है।

बहुत सारे बाईकें दिखाई दे रही हैं एक खंभा नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे तारें लगे हुए हैं।

यह एक मॉल नजर आ रहा है मॉल के अंदर बहुत सारे दुकानें दिख रही है जिस दुकानें के नाम सफारी एक्शन मुफ्ती यह सब दिखाई दे रहा है।

एक मिरर बड़ी सी नज़र आ रही है उसके ऊपर में बहोत सारे बलून दिखाई दे रहे है जिनका कलर व्हाइट रेड येलो नज़र आ रहा है।

सामने बहोत सारे सब्जियां दिखाई दे रही है दो बोरी नज़र आ रहे है सफेद कलर की धनिया बंधे हुए नज़र आ रहे है नींबू झिल्ली मे --

एक बाइक और एक व्यक्ति वहां दिखाई दे रहा है पेट्रोल भरवाते।